व्हाइट शर्ट पहन के है।

चश्मा पेहनले है जैकेट है मफरल है ।

टेबल है कुर्सी है।

काला का टोपी है फोटो ऊ कैलेंडर है टंगा है बोर्ड है दरवाज़ा है ।

घूमने का टहलने का बहुत स अच्छा जगह है ।